यहाँ काफी सारे गमले रखे हैं जिसमें कु-- छोटे-छोटे पेड़ लगे हैं कुछ पौध लगे हुए हैं और कुछ फूल है ऊपर की तरफ भी एक गमला रखा है।

एक सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जो की लाल कलर की है ऊपर आसमान नजर आ रहा है और कुछ बादल भी नजर आ रहे हैं और पीछे की तरफ गाड़ी खड़ी है और एक आदमी खड़ा है।

दूसरी तरफ कुछ मिट्टी और रेत पड़ी है और कुछ फूल पड़े है पीछे की तरफ कुछ और बोर्ड लगे है और लाइट के खंभे लगे है एक बिल्डिंग भी नजर आ रही है पीछे की तरफ एक और पेड़ लगा है।

यहाँ सामने एक बड़ा बल्ब लटका हुआ है रोशनी लाल है नीचे के तरफ कुछ स्टूल रखे हुए है जो कि काले और लाल है।

यहाँ काफी सारे लोग बैठे हुए हैं एक छपरी बनी हुई है सामने एक बोर्ड लगा हुआ है और एक और छपरी बनी हुई है।

नीचे की तरफ एक बहुत बड़ी जमीन है जिसमे कुछ डिजाइन बना हुआ है कुछ पाउडर छलका हुआ है उसपे कुछ लोग चल रहे है सामने की तरफ भी कुछ लोग है व कुछ बोर्ड लगे हुए है एक बड़ी इमारत बनी हुई है जो कि पीले रंग की है।

एक और आदमी है जो की दूसरा काम कर रहा है सामने कांच लगे हुए हैं बहोत सारे दीवार पर पंखा लगा है ए.सी. लगा हुआ है छत है छत पे लाइटे लगी हुई हैं।